अ ये स्वच्छ भारत अभियान का भी है।

हां जिसमें अम लोग बैठे हुए हैं और यहां पे अ सूरज दिखाई दे रहा है सनराइज --

यहां पर तीन दुकाने है जिसमें--

और दूसरी दुकान है जिसमें हम साबुन वगैरह खरीद सकते हैं। मुंह धोने वाली दुकान है।

और थर्ड दुकान है जो जिसमें हा कपड़े वगेरा खरीद सकते है हम--

एक्सरसाइज करने के लिए भी सामान रखा हुआ है।

और बड़े बूढ़े भी आते हैं यहां पर एक्सरसाइज करने के लिए--

यहां एक पानी का तालाब है जहां आप जो जंगल के रीच मे है।

सही भी किया जाता है और बनाया जाता है यहां पर बट यहां पर बड़ी बड़ी मशीने है।

यहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और प्रोवाइड करती हैं जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन पैसे लगा सकते हैं फॉर ट्रेडिंग के लिए--

यह एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है।

उनकी गाड़ी खराब हो गई है शायद--

जहां पर लोग सब्जी खरीदने के लिए आते हैं और--

और घर पे ले जाते हैं।

यहां पर एक बच्चा है जो कि सब्जी बेच रहा है।

सैनिक लोग रहते हैं यहां पर अभी हमें दो सैनिक--

और बगल में गार्डन भी है छोटा सा।

लोग बाहर से खाने के लिए आते हैं।

जो हम ऑर्डर करते हैं और वेटर उसे लाता है।

जिस पर हम कुछ भी देख सकते हैं।

रेस्ट कर सकते हैं यहां पर बहोत सारे लोग एक साथ--

लोग कहां बे करते हैं और यहां पर--

लोगों का फिल्टर भी होता है।

यहां एक बड़ा ऑफसर होता है।

से खरीद सकते हैं यहां पर पेमेंट भी कर सकते हैं।

और बड़े आदमी भी निकलते हैं।